एक प्लेग्राउंड है जहां पे बोहोत से लड़के प्ले कर रहे है और यहाँ पर कुछ वृक्ष पौधा सा लगा हुआ है बहुत अच्छा पीछे वृक्ष है बास है खम्बा टाइप का गाछ है बहुत अच्छा-अच्छा लग रहा है हमको ----

नीला कारपेट है लाल कारपेट है बाइक सब बहुत अच्छा-अच्छा हमको देखने का मन करता है वही हम खरीद ले इ हमको बहुत पसंद है हौंडा बाइक चलाएंगे रात में---

एगो हॉलटा-टाइप का है जहां पे ---

बी_एस_सी बेरोजगार पान भंडार है ऐसा भी पान भण्डार होता है यार मोबाइल नंबर दिया हुआ है सूरज कुमार है समाहरणा गेट के सामने मधेपुरा बासठ डबल जीरो अठ्ठतर है।